और आस पास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो की हरे रंग के है।

और एक आदमी नीले और काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

और कुछ छोटे बड़े पेड़ पौधे हैं जो की हरे रंग के है।

सफेद रंग का है और कुछ पेड़ पौधे हैं जोकि हरे रंग के हैं।

सामने एक कमरा है जिसका रंग लाल और सफेद रंग से रंगा गया है।

सामने एक मा दुकान है जिसका रंग सफेद और भूरे रंग का है।

और एक कार है जिसमें लाल रंग का है।

और एक आदमी है जिसने भूरे रंग के कपड़े पहना हुआ है।

और एक व्यक्ति खड़ा है जिसने सफेद रंग कपड़े पहने हुए है।

सामने कुछ खंभे है जिनका रंग भूरे रंग --